जोकि अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी इसका लिंटर डला है और इसको बल्लियो से सेट किया हुआ है।

यहां पे एक लैपटॉप पड़ा है एक ग्लोब पड़ा है कुछ--

शायद यहां कोई एक इमारत है अंदर जहां पर लोग दर्शन के लिए जाते हैं।

यह एक सुपर स्टोर है यहां पर हर तरह की चीजें मिलती हैं सामने बहुत सारे खिलौने टंगे हुए हैं नीचे डब्बे रखे हुए हैं बड़े और छोटे जिसमें सामान रखा हुआ है।

यह एक क्लासरूम की फोटो है। यहां पर कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। एक मैडम खड़ी होके एक बच्चे की हेल्प कर रही है कई बच्चों का बैग और बोतल पड़ी है।

चीज रखी है इन गमलों में अलग अलग प्रकार के पौधे हैं।

यह एक होटल का दृश्य है जहां पर आगे तीन कुर्सियां पड़ी है अंदर कई सारे टेबल है।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

जहां पर एक इंसान खड़ा है जिसके पीछे लाल रंग के गुब्बारे लगे है मुझे तो लगता है इस इंसान का जन्मदिन है।

एक इंसान फोन पर बात कर रहा है इसके साथ में ग्लोबल फॉर्मेसिंग नाम की एक दवाईयों की दुकान भी है।

यहां पर एक पीछे कोका कोला का फ्रिज पड़ा है।

एक इंसान यहां पर अपने ठेले पर जा रहा है।

एक दो तीन चार चार और लोग ये है।

यहां पर एक इंसान ऑटो रिक्शा में बैठ कर जा रहा है जो बिल्कुल ड्राइवर के साथ ही बैठा है।

जय श्री हनुमान ज्वेलर्स हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है।